और गुब्बारे की लाइन लगी हुई है एक आदमी खड़ा हुआ है एक आदमी बैठा हुआ है।

और दो पोस्टर लगे हुए एक ऊपर एल_सी_डी भी लगी हुई है।

और दो आदमी हैं और औरत भी है और अंदर बहुत सारे आदमी हैं।

और दस पन्द्रह आदमी बैठे हुए और बराबर में भी बैठे हुए इसके।

इस पहाड़ में पत्थर पड़े हुए हैं बहुत सारे।

ये एक रोड है इस रोड पे और तीन चार टेंपू खड़े हुए हैं।

और नीचे एक पेड़ टूटा हुआ पड़ा है।

और दो घंटे लगे हुए है घड़ी--

ये एक द्वाल है। इस द्वाल में डिजाइन बना हुआ है।

ये एक दुकान है लाइट की बहोत बड़ी।

इसमें वेल्डिंग मशीन रखी हुई है।

और बरबर में सोफे के अलमारी है।

इसमें गणेश भी हैं और मंदिर रखे है छोटी छोटी।

और एक जंगल भी है और सिरसो बोई हुई है।

ये एक एक पेडी पे एक का लिखा हुआ है एक दो लिखा हुआ एक तीन का लिखा है।

सफेद लाल हरी पेंसिल लगी हुई एवं एक इसके ऊपर भी बोर्ड लग रहा है और तीन बच्चों ने--

इन दुकानों पे मिठाई भी रखी हुई है मिठाई भी है और फ्रिज है।

और इसके बराबर में केले के दुकान भी है ठेले केले बिके हुए हैं।

और दो बॉटल रखी हुई हैं यहां से चटनी की।